सारी समाने बेचीं जाती है यहां पर हर किसी को आके सामान खरीदना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक --

येलो ग्रीन है ऊ बीच में अशोक चक्र है जिसमे चौबीस तीलियाँ लगी हुई है।

यहाँ पर क्रिस्चियन समाज के लोग यही गाँव के लोग ही आके यहाँ प्राथना करते हैं क्योंकि यह गाँव में है ।

एल्वेस्टर का बनाया गया है जो की ऊपर मे टिना लगा दिया गया है।

भाग ना सके और किसानों को दिक्कत ना हो उसका चारा ना खा जाए।

इसलिए इसको आराम चाहिए और यह बैड पे सोके कम्फर्टेबल होके आराम कर रहा है। यह बैड बहुत ही अच्छा है। हर किसी को ऐसा ही बैड लेना चाहिए।

क्योंकि बच्चे लोग घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है इसलिए बच्चे लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं कि आसपास के लाइब्रेरी में जा के पढ़ाई करें और यहाँ पे लाइब्रेरी बना है और बच्चे लोग आ के यहाँ पे पढ़ाई करते हैं।

हर चीज़ का वैल्यू बढ़ता है और रोड वहीं होता है जहाँ घर जाता है।